बहोत सुन्दर एक लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है जिसने किरीम रंग की शर्ट और--

बैठने के लिए काले रंग के स्टूल वहाँ पर रखे हुए है काले रंग की छोटी -सी --

छतो पर झुमर लगाए हुए है आस पास खंबो पर लाल और सफ़ेद रंग किया हुआ है।

पानी का रंग नीला है दीवारे बनी हुए है जो कि नीला --

लकड़ी का बहुत ही सुन्दर जाने के लिए ठेला लगाया हुआ है हरे चश्मे वाले लिखे हुए है।

टेबल पर पेटीम मशीन रखी हुई है और चारो तरफ लॉकर में कपड़े रखे हुए है रंग-बिरंगे हरे पिले--

और पोल पर सफेद रंग किया हुआ है आस -पास नोका भी है जिनमें मगर रखे हुए है लकड़ी के नोका है आस- पास --

कच्ची मिट्टी है जिसमे छोटे-छोटे पत्थर है आसमान नीला और सफ़ीद रंग का है जो की बहोत--

समुन्दर का किनार है जिसमें --

रेलवे लाइन है जिसके किनारे पर एक आदमी और तीन कुत्ते बैठे हुए है।

साथ में ही बहुत सारे अर मरद वहाँ पर खड़े है पुरुष है जिन्होंने लाल और काले रंग के --